यहाँ पर मुझे एक घर बनता भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैठा हुआ --

सब बैठे-बैठे अपना योगा करती हुई दिख रही है यहाँ पर दो बॉक्स भी रखे हुए है जो साउंड बॉक्स है ।

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे में मुझे टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है जो कि ऑरेंज कलर से पेंट दिखाई दे रही है ।

और यहाँ पर मुझे बहुत सारे डमी भी दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर कपड़े हैं और यहाँ पर मुझे एक वाइट कलर की कार भी खड़ी दिखाई दे रही है |